ग्रास ब्रीच है बच्चा सब बैठा हुआ है फ्लावर फ्लावर का फेल है फूल का फेल है।

बगल में जेंट्स है मास्क लगाकर और नीचे में बाइक लगा हुआ है पूरा स्कूटी है दो बाइक हैऔर पूरा--

पूरा बड़ा मॉल टाइप का बहुत अच्छा दिख रहा है दुकान लग रहा है ये बहुत बड़ा दुकान है पीछे में तार भी है।